कुछ लकड़ी के फर्नीचर्स जैसे अलमारी--

बिरला पंप एग्रीकल्चर पाइप सैनिटरी के सामान उपलब्ध हैं।

यह खेलने की जगह बहोत ही सुंदर दिखाई दे रही है।

ये तस्वीर एक बड़े से आलीशान वीरा की तस्वीर दिख रही है।

इस टूरिस्ट स्पॉट में कई सारे पेड़ पौधे--

खेल कूद के उपकरणों की दुकान दिखाई पड़ रही है।

और बहोत सारे सामान भी दिख रहे हैं इस दुकान में--

कुछ बच्चे इस गुफा के आसपास घूम रहे हैं।

कई लोग एक दुकान के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं यह दुकान--

इस दुकान का असली नाम गुप्ता टायर हाउस दिखाई पड़ रहा --